यहां पर बहोत सारे तख्त भी रखे हुए दिखाई--

दे रहे है यहां पर खिड़कियां भी दिखाई दे रही है यहां पर खिड़कियों में शीशे लगे हुए दिखाई दे रहे--

सामने एक ऑफिस दिखाई दे रहा है ऑफिस बहोत ही बड़ा दिखाई दे रहा है।